एक व्यक्ति है जो के.जी.एफ. के हीरो के पोस्टर के आगे खड़ा है।

बहुत सारे लड़के टाई पहने हुए बहुत सारे लड़के घड़ी पहने हुए --

यह एक सूर्य है जो सूर्यास्त होने के समय है। यह तो सुबह होने के समय है। यह तो हमे लग रहा है सूर्यास्त होने की ही समय है।

यहां एक बस स्टैंड है जिस बस स्टैंड पे चढ़ के आप एक शहर से दुसरे शहर जा सकते हो।

इसके ऊपर पे लाइट लगा होता है अगर रात में बहुत अच्छी प्रकार से रास्ता दिख सके।